यहाँ पे कुछ डेकोरेट किया जा रहा है जोकि किसी समारोह का आयोजनत दिखाई दे रहा है बहोत -सी कुर्सी को लगाए हुए हैं ।

और उसके ऊपर में भी लाइट सब की अच्छे से व्यवस्था की गई हैं ।

और उस पहाड़ के अंदर में पेड़ -पौधे भी बहोत सारे लगे हुए हैं ।

उसके अगल-बगल में भी घास सब सूखे हुए दिखाई दे रहे हैं ।

और जिम के सारे सामान उपकरण सब दिखाई दे रहे हैं ।

उसके ऊपर में नो पैन लिखाया हुआ है ट्रेंड लिखाया हुआ हैं ।

और बहोत सारे सामान को अच्छे से लाइन से एक डिक्की में सभी चीज को रखे हुए है नीचे में एक सोफा दिखाई दे रहा हैं ।